और लोग मेला देख रहे हैं। बहोत अच्छी सजावट है।

और पुस्तकें भी रखी हुई हैं और यह लड़का फोटो खिंचवा रहा है।

सड़क के किनारे एक ऊंची इमारत बनी हुई है और सड़क पे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है।

यह एक नाई की दुकान है।

यह एक नदी है। नदी में एक नाव डली है।

यहां पर मकान बना रहे हैं और पिलर भर रहे हैं। एक व्यक्ति नीचे है। एक व्यक्ति पकड़े हुए है एक खड़ा हुआ है।

यहां पर बोहुत से दिये जल रहे हैं और बोहुत अच्छे भी लग रहे हैं।